यह मोर है जो कि काफी प्यारा है और ये पंख फैलाया हुआ है चारों तरफ।

रंग बिरंगे लाइट है यह आदमी खाड़े --

बैगन पानी जैसा सब्जियां भी है गोभी और फुल गोभी अनाज पपीता है तरबूज है अनेक तरह की थाल है।